एक हरे रंग का ट्रक खड़ा हुआ है।

गमले भी रखे हुए हैं।

कुछ बड़े बड़े पत्थर भी रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक पंखा भी लटकते हुए दिखाई दे रहा है।

कुछ बोट भी दिखाई दे रही है।

और बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं।

चित्र में घर के साफ सफाई के सामान रखे हुए हैं।

और बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

इस चित्र में कुछ पेड़ पौधे और घास दिखाई दे रही है।

सफेद कपड़ो में नृत्य करते हुए दिखाई दे रहा है।

बी मतलब बाटा का शोरूम है।

यह चित्र कच्चे रास्ते का है।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के बाहर कुछ लोग खडे हुए दिखाई दे रहें हैं।

घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह चित्र एक्वेरियम का है।

सफेद और लाल रंग के गुब्बारे से भी सजाया गया है।

रोहन चाय सेंटर है दुकान के बाहर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।